टेबल पर कॉफ़ी बनाने के लिए दो कप रखे हुए है कॉफ़ी रखी हुई है हीटर भी रखा हुआ है उसके साइड मे छोटी डस्टबीन डली हुई दिखाई --

मुझे बहुत सारे भुट्टे दिखाई दे रहे है लकड़ी डली हुई दिखाई दे रही है कुछ भुट्टे छिले हुए और कुछ भुट्टे पैक दिखाई दे रहे है।

इस तसवीर मी मुझे बहुत बडा गार्डन सा दिखायी दे रहा हैं। गार्डन के सामने एक नदी बेहती हुई दिखाई दे रही है उसके सामने एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा है गार्डन मे बहुत सारे--

इसमें बहुत सारे पेड़-पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है और सामने एक मोटर साइकल रोड पर खड़ी दिखाई दे रही है और एक पहाड़ भी--

सामने एक चर्च दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक स्टार भी लगा हुआ है और उसके साइड मे एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है।

किनारे पे एक सब्जी की भीड़भाड़ फल-फ्रूट की दुकान दिखाई दे रही है उसके ऊपर नीले कलर की पन्नी से सेट बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर मे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के सामने का गेट सजा हुआ दिखाई दे रहा है उसके सामने दो बड़े-बड़े गमले लगे हुए --

आइटम रखे हुए दिखाई दे रहे हैकुछ खुली टोकरी दिखाई दे रही है तो कोई ढकी हुई दिखाई दे रही है और कुछ गुलदस्ते भी रखे हुए है उसके पीछे कुर्सी रखी दिखाई दे रही है और पट्टी की किनारे लड़की भी खड़ी हुई है।

वह नीले कलर का कपड़ा ओढ़े हुए बैठा हुआ है उसके पीछे एक व्यक्ति टेब से उसकी फोटो निकाल रहा है और एक स्प्रेबोटल भी रखी हुई दिखाई दे रही--

सामने तीन व्यक्ति बैठे दिखाई दे रहे है दो लेडीज एक जेन्ट्स है और एक टेबल के साइड में बैठा हुआ है उसके सामने एक कम्प्यूटर में कैमरा चल रहा है दूसरे कम्प्यूटर में और कुछ चल रहा --